शीशे की शीशे लगा हुआ है उसमें। खिड़कियां लगी हैं। नीचे की तरफ सजावट हुई है।

पेड़ दिख रहे हैं अंदर की तरफ ईमारत दिख रही है और जो गेट है लोहे का है वो खुला हुआ है।

पर कुछ नीले रंग की है। कुछ गुलाबी रंग की है।

और नीचे की तरप एक व्यक्ति खड़ा है और --

दिवाल पर खिड़कियां बनी हुई है खिड़कियां बंद है कुछ और कुछ --

और नीस ने लिपस्टिक लगाई है गजरा लगाया हुआ है। माथे पर पिले रंग का एह टीका और लाल रंग का टीका लगाया हुआ है।

पुरुष के और उसमें यहाँ पर टी-शर्ट बनी हुई हैं।

अ ये एक हॉल दिख रहा है।

यहाँ पर गौतम बुद्ध की मूर्ति रखी हुई है जिनमे लाल रंग का बनाया गया है कपड़ा पहनाया गया है उ --

तारी अ चरक और कम्बल और दि बिस मे खंभों पर लिखा हुआ है और एक व्यक्ति काउंटर लगा हुआ है काउंटर पे पास खड़ा है।

यहाँ पर आ कक्षा में बहुत सारे व्यक्ति अ बच्चे बैठे हुए है।

कंप्यूटर बहुत सारे रखे हुए हैं सी.पी.यु. रखा हुआ है।

और यहाँ पर विश फॉर इट लिखा है ऊपर।